बैलून भी रखा हुआ हैं तो बहुत अच्छा लग रहा हैं।

यह अभी खुला नहीं है ऊपर में मोबाइल नंबर लिखा गया है।

और ये खुलने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो रहा है ऊपर में आप कांटेक्ट कर सकते कुछ भी आपको ऑर्डर करना होगा तो।

और यहां पे चेयर भी रखा हुआ है जो डॉक्टर साहब बैठ सकते हैं और--

यहां पे एक कुर्सी भी लगाया है गया लाइट भी लगाया गया--

और यह यहां पे दो आदमी बेच रहे एक लेडिस है और एक जेंट्स है जो यहां पे बेच रहे हैं।

यह एक आदमी है और इसके पीछे बहुत बड़ा सा ग्राउंड है।

और यहां पे बहुत सारे मुर्गी च दाना चर रहे खाना खा रहे हैं।

बगल में बहुत सारे आदमी लोग आए हैं पूजा करने के लिए भी बहुत आए।

यहां पे कुछ प्रोग्राम रखा गया है यहां पे बहुत सारे बच्चे लोग प्रोग्राम करने के लिए आए हैं।

यह एक मार्शल आर्ट का एक एकेडमी है।

और यहां पे बहुत सारे लाइट लगाए गए हैं कलरफुल लाइट लगाए गए हैं।

और उसके प पीछे एक लड़का भी बैठा हुआ है।

ऊपर में बहुत सारे पंखे लगाए गए हैं बहुत सारे लाइट लगाए गए हैं।

और इ पिक फोटो ले रहा है ये लड़का।

बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहां पे ऊं डेकोरेट किया गया है।

हैप्पी बर्डे किसी का है और यहां पे बहुत सारे बैलून लगाए गए हैं।